सामने कई सारे छोटे छोटे बच्चे दीवार के पास खड़े हुए हैं।

पूरे कमरे का दीवार सफेद रंग का है और ऊपर एक सफेद रंग का एल_इ_डी लाइट भी जल रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा मुर्गा मौजूद दिखाई दे रहा है।

सभी कुर्सियां और टेबल लकड़ी के बने हुए हैं।

और मैदान में एक पुराना सा लोहे का झूला भी है।

इस तस्वीर में एक गाड़े नीले रंग की साड़ी खोल कर रखी हुई है।

इस तस्वीर में सामने एक सफेद रंग का मकान दिखाई दे रहा है।

यह एक जूते चप्पलों के दुकान के बाहर का दृश्य है।

लकड़ी के डमरु लेकर नाच रहे हैं।

दुकान के बाहर ऊपर इमारत पे हिंदी में श्रद्धा अलंकार ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

इमारत के सामने कुछ सुखी बंजर जमीन दिखाई दे रही--

सामने की ओर एक नीले रंग की टी शर्ट पहना व्यक्ति कुर्सी में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा ऊपर शाई होंडा लिखा हुआ है।

दाहिने और बड़े बड़े तरबूज रखे हुए है।

आसपास का इलाका कई सारे पौधों से भरा हुआ है।

जो एक व्यक्ति आग की मसाला पड़े खड़ा हुआ है।

ऊपर की और कुछ झालरे भी लगी हुई है।

सामने की ओर दूर पे एक ट्रक जा रहा है उसके पीछे कुछ गाड़िया भी है जो दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर बड़े बड़े इमारतें दिखाई दे रही हैं।

जिसके ऊपर रंग बिरंगे गुब्बारे सजाए सजावट के लिए रखे हुए हैं।

और पीछे बादल भी काफी साफ सुथरा हरा भरा नजर आ रहा है।

चर्च के बाहर कई सारी भीड़ उपस्थित दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में सामने एक टॉय ट्रेन का दृश्य है।

यह एक पाइप और ट्यूब दुकान के अंदर का दृश्य है।